यहाँ बहुत बड़ा सा रोड़ दिख रहा है | रोड़ पे एक बस खड़ी हुई है तूफान डीलक्स करके | उसके सामने एक आदमी खडा है | साइड में बहुत सारा पानी भरा हुआ है वहाँ पे और बहुत सारे आदमी खड़े हैं | सामने एक बोर्ड लगा है और एक बड़ा सा पेड़ है।

एक गुफा दिख रही है गुफा मे कुछ उम लड़ियाँ लगी हैं लड़ियाँ दिख रही है | बहुत कलर कुर्सी है निचे | पत्थर छोटे छोटे पत्थर जमे हैं | पथरो के ऊपर कलर डला हुआ है | साइड में कुछ नीला कलर सा भी दिख रहा है |

एक कोहिनोर टाइप की बस दिख रही है नीले कलर की नॉन ए.सी. |

सामने कुछ टेबल पड़े हुए हैं | एक आदमी पोछा लगा रहा है | तीन चार फोटोएं दिख रहीं हैं |

उसके सामने ए.टी.एम के जस्ट सामने एक साइकिल खड़ी है। साइकिल के सामने एक मोटरसाइकल है जिसपर एक औरत साइड में औरत खड़ी हुई है | साइड में कुछ पेड़ हैं और ऊपर छत्त खाली है।